मुझे यहां दिवाली बॉम्ब फताया हुए दिख रहा है।

और मीठा तेल भी देखने को मिल रहा है।

मुझे यहां बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

होटल के अंदर कुर्सी भी रखी हुई है।

और टेबल भी रखे हुए है।

बैंबू से बनाए हुए घर भी दिख रहा है।

मुझे यहां खिलौना दुकान दिख रहा है।

मुझे यहां एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

उपर मे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है।

और फूल भी लगाया हुआ है।

मुझे यहां कुर्सी दिखाई मिल रहा है।

एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

से एक लड़का पैदल जा रहा है।

ऊपर में एक आदमी देखने को मिल रहा है।

दरवाजा भी खुला हुआ है।

साइड में दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

अमूल का पैर भी दिखाई दे रहा है।